इसका नाम है देवयश ज्वेलर्स सोने एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता।

ये येलो और ब्लैक कलर की लग रही हैं पर इनका नाम हम नहीं देख सक--

इस इमेज में हम एक दुकान देख सकते हैं जिसमें बहोत सारा फर्नीचर का सामान रखा हुआ है जैसे कि अलमीरा ।

जहां पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और यहां पर बहोत सारे लोंग भी हैं जो उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं।

इस इमेज में हम बहोत सारी गाड़ियों को देख सकते हैं और बहोत सारे लोंग भी हैं यहां पर।

यहां पर हम किनारा भी देख सकते हैं जहां पर बहोत बड़े से पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

इसका नाम है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस सेंटर मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ।

देखने में एक पेड़ पौधे और गमले नर्सरी ल लग रही हैं।

तो इस इमेज में हम एक बोहोत बड़ी सी मॉन्यूमेंट देख सकते हैं जो कि ब्राउन क्रीम और डार्क ब्राउन कलर की है।

यह देखने में लग रहा है ये लोग इस यहां पर घूमने आए हुए हैं।

इस इमेज में कई सारी ई रिक्शा देख सकते हैं अलग अलग रंग की।

यहां पे इसके पीछे बहुत बड़ी सी बिल्डिंग भी है जिसके ऊपर लिखा है बालूर घाट ।

इस इमेज में हम एक शॉप देख सकते हैं जहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज मिलते हैं जैसे टेनिस रैकेट फुटबॉल ।

यहां पे रेड कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है और बहोत बड़े से पेड़ भी है यहां पर।

इसकी दीवारों ने रंग छोड़ दिया है इस लिए वाइट और ग्रे कलर का दिख रहा है।